उसके ऊपर एक ओवर ब्रिज बनाया गया है।

दो महिलाएं और एक पुरुष ढोलक बजा रहा है एक महिला बिना बजा रही है और एक महिला गा रही है।

यह सर्विस जहां पर रॉयल एनफील्ड का सर्विसिंग होता है।

और यहाँ घर के ऊपर में कई सारे लाइट भी लगाए गए हैं।

हॉस्पिटल में टाइल्स लगाया गया है।

वहां पर एक पानी का जार भी दिखाई दे रहा है।

और वहां पर प्लसतर किया हुआ है।

यहां पर एक आइसक्रीम शॉपकीपर बैठा हुआ है।

छत के ऊपर रॉड भी दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर कई सारे वर्कर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो की ढलाई कर रहे हैं।

के बाहर कई सारे गाड़ियां खड़े हैं।

यह घर में कई सारे खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।

यह घर के अन्दर जाने के लिए शीशा को खोलना है ब्लैक शीशा है।

इसके पीछे एक हमें घर दिखाई दे रहा है।